दो आग बुझाने के यंत्र हैं कपड़े भी फैले हुए हैं।

यह एक चर्च है जिसमें बहुत सारे आदमी हैं।

यह एक कमरा है जिसमें बहुत सुंदर बेड पड़ा हुआ है।

यह एक कमरा है जिसकी दीवारें पिंक और वाइट हैं।

और इसका कलर रेड है यहां पर बहुत सारे आदमी और बच्चे हैं।

यह एक बुक स्टोर है जिसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है।

यहां पर बहुत छोटा छोटा घास भी लगा हुआ है।

यह एक पार्क है जिसमें बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

यह एक रोड है जिस पर बहुत सारी गाड़ियां और ट्रक चल रहे है।

एक साइकिल खड़ी है और बहोत सारे पेड़ पौधे हैं यहां पर बहोत सारे खंबे भी लगे--

यह एक स्कूल है जिस पर चार पांच पोस्टर लगे हुए हैं।